और वह सामने कुछ बैठके सुन रहे हैं।

और सब्जी बनाए जा रहे हैं।

और पानी की हमे जार भी नजर आ रही है।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

बाहर में कुछ एप्स की फोटो दिखाई पड़ रही है।

स्टेशन में दो व्यक्ति खड़े हुए है।

कुछ बाइक और कुछ साइकिल पार्किंग में हमें दिखाई दे रहे--

स्टेज के ऊपर में बहोत सारी लड़कियां हैं।